मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार इस समय आप 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे ही होंगे
नए साल पर हर व्यक्ति हर संस्था आने वाले साल में कुछ और बेहतर करने बेहतर बनने के संकल्प लेते हैं
पिछले सात सालों से हमारी ये मन की बात भी व्यक्ति की समाज की देश की अच्छाइयों को उजागर कर और अच्छा करने और अच्छा बनने की प्रेरणा देती आयी है
इन सात वर्षों में मन की बात करते हुए मैं सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा कर सकता था
आपको भी अच्छा लगता आपने भी सराहा होता लेकिन ये मेरा दशकों का अनुभव है कि मीडिया की चमकदमक से दूर अख़बारों की सुर्ख़ियों से दूर कोटिकोटि लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं
वो देश के आने वाले कल के लिए अपना आज खपा रहे हैं
वो देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्रयासों पर आज जीजान से जुटे रहते हैं
ऐसे लोगों की बात बहुत सुकून देती है गहरी प्रेरणा देती है
मेरे लिए मन की बात हमेशा से ऐसे ही लोगों के प्रयासों से भरा हुआ खिला हुआ सजा हुआ एक सुन्दर उपवन रहा है और मन की बात में तो हर महीने मेरी मशक्कत ही इस बात पर होती है इस उपवन की कौन सी पंखुड़ी आपके बीच लेकर के आऊं
मुझे ख़ुशी है कि हमारी बहुरत्ना वसुंधरा के पुण्य कार्यों का अविरल प्रवाह निरंतर बहता रहता है
और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये जो जनशक्ति है जनजन की शक्ति है उसका उल्लेख उसके प्रयास उसका परिश्रम भारत के और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह से गारंटी देता है
साथियो ये जनशक्ति की ही ताकत है सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका
हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे
अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की
आज विश्व में वैक्सिनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है
वैक्सीन की 140 करोड़ दोसे के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है
ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है विज्ञान पर भरोसा दिखाता है वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छाशक्ति का प्रमाण भी है
लेकिन साथियो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है
पिछले दो वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है
ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं
हर रोज नया दाता उन्हें मिल रहा है उनके सुझावों पर काम हो रहा है
ऐसे में स्वयं की सजगता स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है
हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी इसी दायित्वबोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है
मेरे प्यारे देशवासियो महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा था नभः स्पृशं दीप्तम् यानि गर्व के साथ आकाश को छूना
ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है
माँ भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज़ गर्व से छूते हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं
ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का
वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया
उस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया
वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जांबाजी से लड़े लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए
वरुण जब अस्पताल में थे उस समय मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे ह्रदय को छू गया
इस साल अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था
इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी
इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुँच कर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले
दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की
वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहाँ के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने
अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया बल्कि अपनी असफलताओं की बात की
कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बदला इसकी बात की
इस पत्र में एक जगह उन्होंने लिखा है इत इस ओक टो बीई मीडियोक्रे
नोट एवरयोन विल एक्सेल एटी स्कूल एंड नोट एवरयोन विल बीई एबल टो स्कोर इन थे 90s आईएफ यू डीओ इत इस एएन अमेजिंग अचीवमेंट एंड मस्ट बीई एप्लॉडेड
हॉवेवर आईएफ यू donट डीओ नोट थिंक थाट यू एआरई मींट टो बीई मीडियोक्रे
यू मय बीई मीडियोक्रे इन स्कूल बट इत इस बाय नो मीन्स आ मेजर ओएफ थिंग्स टो कोम इन लाइफ
फाइंड यूर calling इत कोल्ड बीई आर्ट म्यूजिक ग्राफिक डिजाइन लिटरेचर ईटीसी
व्हेटवर यू वर्क टॉवर्ड्स बीई डेडिकेटेड डीओ यूर बेस्ट
नेवर गो टो बैडबेडबेड थिंकिंग आई कोल्ड हेव पुटिन मोरे इफोर्ट्स
साथियो औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है
इसी पत्र में वरुण सिंह ने लिखा है
नेवर लोसे होप
नेवर थिंक थाट यू कैनोट बीई गुड एटी व्हाट यू वांट टो बीई इत विल नोट कोम ईजी इत विल टेक सैक्रिफाइस ओएफ टाइम एंड कम्फर्ट
आई वास मीडियोक्रे एंड तोड़े आई हेव रीच्ड डिफिकल्ट माइलस्टोन्स इन माय कैरियर
डीओ नोट थिंक थाट 12th बोर्ड मार्क्स डिसाइड व्हाट यू एआरई कैपेबल ओएफ अचीविंग इन लाइफ
बिलीव इन यूरसेल्फ एंड वर्क टॉवर्ड्स इत
वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा
लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है
उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट्स से बात करता हो लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को सन्देश दिया है
साथियो हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूँ
इस साल भी एक्साम्स से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ
इस कार्यक्रम के लिए दो दिन बाद 28 दिसंबर से MyGovइन पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है
ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा
इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ओनलाइन कॉम्पिटिशन भी आयोजित होगा
मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें जरुर हिस्सा लें
आपसे मुलाक़ात करने का मौका मिलेगा
हम सब मिलकर परीक्षा कैरियर सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ जो सरहद के पार कहीं बहुत दूर से आई है
ये आपको आनंदित भी करेंगी और हैरान भी कर देगी
वोकल वंदे मात्रम
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यशामलां मातरम्
वन्दे मातरम्
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं
सुखदां वरदां मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
मुझे पूरा विश्वास है कि ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा गर्व की अनुभूति हुई होगी
वन्दे मातरम् में जो भाव निहित है वो हमें गर्व और जोश से भर देता है
साथियो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये खूबसूरत वीडियो कहाँ का है किस देश से आया है इसका जवाब आपकी हैरानी और बढ़ा देगा
वन्दे मातरम् प्रस्तुत करने वाले ये स्टूडेंट्स ग्रीस के हैं
वहां वे इलिया के हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं
इन्होंने जिस खूबसूरती और भाव के साथ वंदे मातरम् गाया है वो अद्भुत और सराहनीय है
ऐसे ही प्रयास दो देशों के लोगों को और करीब लाते हैं
मैं ग्रीस के इन छात्र छात्राओं और उनके टीचर्स का अभिनन्दन करता हूँ
आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान किये गए उनके प्रयास की सराहना करता हूँ
साथियो मैं लखनऊ के रहने वाले निलेश जी की एक पोस्ट की भी चर्चा करना चाहूँगा
निलेश जी ने लखनऊ में हुए एक अनूठे ड्रोन शो की बहुत प्रशंसा की है
ये ड्रोन शो लखनऊ के रेसिडेंसी क्षेत्र में आयोजित किया गया था
1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की गवाही रेसिडेंसी की दीवारों पर आज भी नजर आती है
रेसिडेंसी में हुए ड्रोन शो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अलगअलग पहलुओं को जीवंत बनाया गया
चाहे चौरी चौरा आन्दोलन हो काकोरी ट्रेन की घटना हो या फिर नेताजी सुभाष का अदम्य साहस और पराक्रम इस ड्रोन शो ने सबका दिल जीत लिया
आप भी इसी तरह अपने शहरों के गांवों के आजादी के आन्दोलन से जुड़े अनूठे पहलुओं को लोगों के सामने ला सकते हैं
इसमें टेक्नोलॉजी की भी खूब मदद ले सकते हैं
आजादी का अमृत महोत्सव हमें आजादी की जंग की स्मृतियों को जीने का अवसर देता है उसको अनुभव करने का अवसर देता है
ये देश के लिए नए संकल्प लेने का कुछ कर गुजरने की इच्छाशक्ति दिखाने का प्रेरक उत्सव है प्रेरक अवसर है
आइए स्वतंत्रता संग्राम की महान विभूतियों से प्रेरित होते रहें देश के लिए अपने प्रयास और मजबूत करते रहें
मेरे प्यारे देशवासियो हमारा भारत कई अनेक असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न है जिनका कृतित्व दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है
ऐसे ही एक व्यक्ति हैं तेलंगाना के डॉक्टर कुरेला विट्ठलाचार्य जी
उनकी उम्र 84 साल है
विट्ठलाचार्य जी इसकी मिसाल है कि जब बात अपने सपने पूरे करने की हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती
साथियो विट्ठलाचार्य जी की बचपन से एक इच्छा थी कि वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी खोलें
देश तब गुलाम था कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि बचपन का वो सपना तब सपना ही रह गया
समय के साथ विट्ठलाचार्य जी लेक्चरर बने तेलुगु भाषा का गहन अध्ययन किया और उसी में कई सारी रचनाओं का सृजन भी किया
67 साल पहले वो एक बार फिर अपना सपना पूरा करने में जुटे
उन्होंने खुद की किताबों से लाइब्रेरी की शुरुआत की
अपने जीवनभर की कमाई इसमें लगा दी
धीरेधीरे लोग इससे जुड़ते चले गए और योगदान करते गए
यदाद्रिभुवनागिरी जिले के रमन्नापेट मंडल की इस लाइब्रेरी में करीब 2 लाख पुस्तकें हैं
विट्ठलाचार्य जी कहते हैं कि पढ़ाई को लेकर उन्हें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो किसी और को न करना पड़े
उन्हें आज ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल रहा है
उनके प्रयासों से प्रेरित होकर कई दूसरे गांवों के लोग भी लाइब्रेरी बनाने में जुटे हैं
साथियो किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देतीं बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं जीवन को भी गढ़ती हैं
किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है
आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ीं
अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी हैं
ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए
मैं भी मन की बात के श्रोताओ से कहूंगा कि आप इस वर्ष की अपनी उन पाँच किताबों के बारे में बताएं जो आपकी पसंदीदा रही हैं
इस तरह से आप 2022 में दूसरे पाठकों को अच्छी किताबें चुनने में भी मदद कर सकेंगे
ऐसे समय में जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बुक रीडिंग अधिक से अधिक पॉपुलर बने इसके लिए भी हमें मिलकर प्रयास करना होगा
मेरे प्यारे देशवासियो हाल ही में मेरा ध्यान एक दिलचस्प प्रयास की ओर गया है
ये कोशिश हमारे प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक मूल्यों को भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में लोकप्रिय बनाने की है
पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का एक सेंटर है
इस संस्थान ने दूसरे देशों के लोगों को महाभारत के महत्व से परिचित कराने के लिए ओनलाइन कोर्स शुरू किया है
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोर्स भले अभी शुरू किया गया है लेकिन इसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसे तैयार करने की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी
जब इंस्टीट्यूट ने इससे जुड़ा कोर्स शुरू किया तो उसे जबरदस्त रिस्पांस मिला
मैं इस शानदार पहल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी परंपरा के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है
सात समंदर पार बैठे लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचे इसके लिए भी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं
साथियो आज दुनियाभर में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है
अलगअलग देशों के लोग ना सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं
ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सर्बियन स्कॉलर डॉ मोमिर निकिच सर्बियन स्कॉलर डीआर
इन्होंने एक बाइलिंगुअल संस्कृतसेर्बियन डिक्शनरी तैयार की है
इस डिक्शनरी में शामिल किए गए संस्कृत के 70 हजार से अधिक शब्दों का सर्बियन भाषा में अनुवाद किया गया है
आपको ये जानकार और भी अच्छा लगेगा कि डॉ० निकिच ने 70 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा सीखी है
वे बताते हैं कि इसकी प्रेरणा उन्हें महात्मा गांधी के लेखों को पढ़कर मिली
इसी प्रकार का उदाहरण मंगोलिया के 93 तिरानवे साल के प्रोफ़ेसर जे गेंदेधरम का भी है
पिछले 4 दशकों में उन्होंने भारत के करीब 40 प्राचीन ग्रंथों महाकाव्यों और रचनाओं का मंगोलियन भाषा में अनुवाद किया है
अपने देश में भी इस तरह के जज्बे के साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं
मुझे गोवा के सागर मुले जी के प्रयासों के बारे में भी जानने को मिला है जो सैकड़ों वर्ष पुरानी कावी चित्रकला को लुप्त होने से बचाने में जुटे हैं
कावी चित्रकला भारत के प्राचीन इतिहास को अपने आप में समेटे है
दरअसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी
प्राचीन काल में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था
गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान वहाँ से पलायन करने वाले लोगों ने दूसरे राज्यों के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचय कराया
समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होती जा रही थी
लेकिन सागर मुले जी ने इस कला में नई जान फूँक दी है
उनके इस प्रयास को भरपूर सराहना भी मिल रही है
साथियो एक छोटी सी कोशिश एक छोटा कदम भी हमारे समृद्ध कलाओं के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है
अगर हमारे देश के लोग ठान लें तो देशभर में हमारी प्राचीन कलाओं को सजाने संवारने और बचाने का जज्बा एक जनआंदोलन का रूप ले सकता है
मैंने यहाँ कुछ ही प्रयासों के बारे में बात की है
देशभर में इस तरह के अनेक प्रयास हो रहे हैं
आप उनकी जानकारी नामो App के ज़रिये मुझ तक जरुर पहुँचाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभियान चला रखा है और उसे नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान
इस अभियान में लोग स्वेच्छा से अपनी एयरगन सरेंडर कर रहे हैं जानते हैं क्यों ताकि अरुणाचल प्रदेश में पक्षियों का अंधाधुंध शिकार रुक सके
साथियो अरुणाचल प्रदेश पक्षियों की 500 से भी अधिक प्रजातियों का घर है
इनमें कुछ ऐसी देसी प्रजातियाँ भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं
लेकिन धीरेधीरे अब जंगलों में पक्षियों की संख्या में कमी आने लगी है
इसे सुधारने के लिए ही अब ये एयरगन सरेंडर अभियान चल रहा है
पिछले कुछ महीनों में पहाड़ से मैदानी इलाकों तक एक कम्यूनिटी से लेकर दूसरी कम्यूनिटी तक राज्य में हर तरफ लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है
अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से ज्यादा एयरगन सरेंडर कर चुके हैं
मैं अरुणाचल के लोगों की इसके लिए प्रशंसा करता हूँ उनका अभिनन्दन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आप सभी की ओर से 2022 से जुड़े बहुत सारे सन्देश और सुझाव आए हैं
एक विषय हर बार की तरह अधिकांश लोगो के संदेशो में हैं
ये है स्वच्छता और स्वच्छ भारत का
स्वच्छता का ये संकल्प अनुशासन से सजगता से और समर्पण से ही पूरा होगा
हम एनसीसी कैडेट्स एनसीसी कैडेट्स द्वारा शुरू किए गये पुनीत सागर अभियान में भी इसकी झलक देख सकते हैं
इस अभियान में 30 हज़ार से अधिक एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए
एनसीसी के इन कैडेट्स ने बीचेस पर सफाई की वहाँ से प्लास्टिक कचरा हटाकर उसे रिसाइक्लिंग के लिए इकट्ठा किया
हमारे बीचेस हमारे पहाड़ ये हमारे घूमने लायक तभी होते हैं जब वहाँ साफ सफाई हो
बहुत से लोग किसी जगह जाने का सपना ज़िन्दगी भर देखते हैं लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो जानेअनजाने कचरा भी फैला आते हैं
ये हर देशवासी की ज़िम्मेदारी है कि जो जगह हमें इतनी खुशी देती हैं हम उन्हें अस्वच्छ न करें
साथियो मुझे साफवाटर साफवाटर नाम से एक स्टार्टअप के बारे में पता चला है जिसे कुछ युवाओं ने शुरु किया है
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ओएफ थिंग्स की मदद से लोगों को उनके इलाके में पानी की शुद्धता और क्वालिटी से जुड़ी जानकारी देगा
ये स्वच्छता का ही तो एक अगला चरण है
लोगों के स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य के लिए इस स्टार्टअप की अहमियत को देखते हुए इसे एक ग्लोबल अवार्ड भी मिला है
साथियो एक कदम स्वच्छता की ओर इस प्रयास में संस्थाएँ हो या सरकार सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है
आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढ़ेर रहता था
जब से सरकार ने पुराने तौरतरीकों को बदलना शुरु किया है ये फाइल्स और कागज के ढ़ेर डिजिटाइज होकर कम्प्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं
जितना पुराना और पेंडिंग मटीरियल है उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं
इस अभियान से कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़े हुई हैं
डिपार्टमेंट ओएफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला तो वहाँ का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया
अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है
एक और जंकयार्ड त्वो व्हीलर्स के लिए पार्किंग स्पेस बना दिया गया है
इसी तरह पर्यावरण मंत्रालय ने अपने खाली हुए जंकयार्ड को वेलनेस सेंटर में बदल दिया
शहरी कार्य मंत्रालय ने तो एक स्वच्छ एटीएम भी लगाया है
इसका उद्धेश्य है कि लोग कचरा दें और बदले में कैश लेकर जाएँ
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के विभागों ने पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियों और जैविक कचरे से जैविक कंपोस्ट खाद बनाना शुरु किया है
ये विभाग वास्ते पेपर से स्टेशनरी भी बनाने का काम कर रहा है
हमारे सरकारी विभाग भी स्वच्छता जैसे विषय पर इतने इनोवेटिव हो सकते हैं
कुछ साल पहले तक किसी को इसका भरोसा भी नहीं होता था लेकिन आज ये व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है
यही तो देश की नई सोच है जिसका नेतृत्व सारे देशवासी मिलकर कर रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में इस बार भी हमने ढ़ेर सारे विषयों पर बात की
हर बार की तरह एक महीने बाद हम फिर मिलेंगे लेकिन 2022 में
हर नई शुरुआत अपने सामर्थ्य को पहचानने का भी एक अवसर लाती है
जिन लक्ष्यों की पहले हम कल्पना भी नहीं करते थे
आज देश उनके लिए प्रयास कर रहा है
हमारे यहाँ कहा गया है
क्षणश कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्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
यानि जब हमें विद्या अर्जित करनी हो कुछ नया सीखना हो करना हो तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए
और जब हमें धन अर्जन करना हो यानि उन्नतिप्रगति करनी हो तो हर एक कण का यानि हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना चाहिए
क्योंकि क्षण के नष्ट होने से विद्या और ज्ञान चला जाता है और कण के नष्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं
ये बात हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है
हमें कितना कुछ सीखना है नएनए इनोवेशंस करने हैं नएनए लक्ष्य हासिल करने हैं इसलिए हमें एक क्षण गंवाए बिना लगना होगा
हमें देश को विकास की नयी ऊँचाई पर लेकर जाना है इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा
ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा
इसलिए आईये हम अपना संकल्प दोहरायें कि बड़ा सोचेंगें बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जीजान लगा देंगे
और हमारे सपने केवल हम तक ही सीमित नहीं होंगे
हमारे सपने ऐसे होंगे जिनसे हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुलें और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा बिना एक क्षण गँवाए बिना एक कण गँवाये
मुझे पूरा भरोसा है कि इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा
इसी विश्वास के साथ आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं
बहुत बहुत धन्यवाद